इस पिक्चर में एक आदमी अपनी फोटो खिचाते हुए पोज देते हुए दिखाई दे रहा है जिसमें --

इस पिक्चर में हम्म मां शरस्वती का फोटो है जिसमें एक लड़का मां शरस्वति से आशीर्वाद ले रहा है। मां शरस्वती के हाथों में वीणा सुसज्जित है और माता एकदम सुंदर लग रहीं हैं।

ऐे एक नगर का दृश्य दिखाई दे रहा है। जिसमें टैक्सी बस ट्रक इत्यादि लगे हैं तथा दुकान के छोटे छोटे ढाबे लगे हुए हैं इसमें।

इस पिक्चर में खाली हॉल दिखाई दे रहा है जिसमें लाइटें लगी हुई हैं तथा टाइल का प्रयोग किया गया हॉल में बेहतरीन सफाई है जो कि सुंदर एवं मन को हरित करने वाली लग रही है।

इस पिक्चर में कई सारे बच्चे बुजुर्ग महिलाएँ एकत्रित होती हुई दिखाई दे रही हैं जैसे किसी सभा एवं समिति में बैठी हुई तथा सभी लोग ध्यान पूर्वक उम्म अपने मंच की तरफ देख रहे हैं।

यहां पर हमें बहुत सारे पेड़ों का चित्र दिखाई दे रहा है पेड़ में हम्म यहाँ एक पार्क का चित्र है।

दिखाई दे रहे हैं तथा यहां पंखे दिखाई नहीं दे रहे हैं और इसमें बहुत सारी लाइटिंग लगी है